ग्राउन्ड के चारों टाइप जो दीवार उठी हुई है जो येलो कलर से बनी हुई है आप देख सकते हैं इसके आस-पास पेड़-पौधे भी आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं जो इसके केपटेन हैं उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े --

कसरत करने वाला हुआ जिम सुई इसमें कई प्रकार के यहाँ पे झूले दिखाए गए है इस ग्राउंड के आस-पास बाउंड्री भी बनी हुई है मल्टी भी बनी हुई है और कुछ यहाँ पे पेड़-पौधे भी आपको देखने को मिल रहे हैं।

इमेज में हमें एक स्टेशन की पिक्चर दिखाई गई है आप देख सकते हैं की स्टेशन के जो बाजु में यहाँ पर सीढ़ियाँ कुछ बनी है।

इसके आस-पास आपको आ चारो साइड बौंडरी टाइप में दिख रही है इसके आस-पास आपको पड़े-पौधे भी दिख रहे है जो बिल्डिंग बनी है वो येलो कलर से बनी हुई है।

और इसमे आपको लाइट्स भी दिख रही है इसके अंदर भी आपको काफी सारी चीजे दिख रही है और ये नाइट का फोटो है इसके सामने कुछ आपको ब्लैक कलर से गाड़ी भी दिख रही है काफी सारी गाड़ी है कुछ लोग भी यहाँ दिख रहे है।